हमें तस्वीर के अंदर आयुर्वेद पंचकर्म का बोर्ड लगा नजर आ रहा है बिल्डिंग दिखाई दे रही है हमें।

हमें पेड़ लगा हुआ नज़र आ रहा है हरा हरा पेड़ लगा हुआ है बिल्डिंग के पास --

और भी एक्सरसाइज मशीनें हमें दिखाई दे रही हैं रखी और पीछे भी--

चित्रांश नर्सरी का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है हमें।

हमें सड़क दिखाई दे रही है और पेड़ लगा हुआ है।

और दूर हमें बिल्डिंगें भी दूर बहुत दूर नजर आ रही हैं बनी हुई।

पेड़ लगे हुए हैं छोटे हरे पौधे लगे हैं।

और हमें दिखाई दे रहा है अ मारुति--

उसने बैग कंधे पर पहना हुआ है पीठ पर--

और हमें आसपास नीचे इसके पेड़ लगे हुए लाइट लगी हुई नजर आ रही हैं।

और फूल रखे हुए हमें नजर आ रहे हैं उसके ऊपर पीले रंग के--

हमें इस तस्वीर के अंदर एक लाल बस बड़ी खड़ी हुई नजर आ रही है।

और सफेद और काले ऊपर बादल दिखाई दे रहे हैं।

जमीन के ऊपर हमें बैठा हुआ और घास के ऊपर एक कछुआ बड़ा सा दिखाई दे रहा है।

कांच का एक गेट हमें लगा नज़र आ रहा है और हमें और भी आदमी दो दिखाई दे रहे हैं।

हमें तस्वीर के अंदर दिखाई दे रहा है एक--

पत्ते भी लगे हुए हरे हमें उसमें दिखाई दे रहे हैं।

ये एक ज्वेलरी की दुकान है जिसमें बहुत सारा हमें--

शोकेस उसके अंदर रखा भी है और सामने भी जमा हुआ है पंख लगा है।

दिखाई दे रहे हैं दूर तक हमें हरे-हरे पेड़ लगे हुए भी हरियाली दिखाई दे रही है।

एक बिल्डिंग हमें इसमें नजर आ रही है बड़ी सी इसके ऊपर असमा कॉम्प्लेक्स लिखा है।

फीमेल जनरल वॉट का हमें लगा हुआ ये बोर्ड दिखाई दे रहा है बाहर--